और ऐरो का निशान बना है।

यहाँ एक लड़का गुलाबी रंग की टीशर्ट और ब्लैक जीन्स पहने है और कई लोग बैठे है।

वहाँ कुछ खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहै है यहाँ लोहै के दो डंडे है।

रखी हुवी है यहाँ कुछ हरे ऑरेंज नीले गुब्बारे लगे है।

यहाँ चार पिलर दिख रहै है और यहाँ दूर --

यहाँ बहोत से लोग खड़े हुए है और एक लड़का सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहने हुए है।

एक महिला खड़ी है जो पर्पल रंग की स्वेटर पहने है।

यहाँ एक मकान बनते हुए दिख रहा है और कुछ ईटे --

यहाँ पर एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमे दो भैंसे खड़ी है।

तालाब की जल में कुछ लहेरे दिखाई दे रही है।